जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है।

सामने मुझे एक दीवार दिख रही है जिसमें से दो पाइप निकल रहे हैं सफेद रंग के जिसके पास पौधा लगा हुआ हैं।

और इसके ऊपर एक सरिया निकली हुई है लोहे की--

दीवार के पास में एक खंभा लगा हुआ है जिसमें तार लगे हुए हैं और पास में एक बड़ा पेड़ है जो फैला हुआ है।

सूरज जो है ढल रहा है तो वो नारंगी दिख रहा है यहाँ पे काफी लंबे-लंबे पेड़ लगे हुए है जो काले दिख रहे है।

सामने में एक जिम देख पा रहा हूं जिम के फर्श पर मैट बिछी है जो नीले और गुलाबी रंग में है।

यहाँ पे मैं एक फंक्शन देख पा रहा हूँ।

और यहाँ की दीवारें जो है वो सफेद रंग की है और छत पे बल्ब लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक बिल्डिंग जैसी बनी हुई है जो सफेद रंग की और मटमैले रंग की है यहाँ पे कई सारे दरवाजे लगे हुए हैं सारे के सारे बंद है।

और फूल भी है यहाँ पास में एक तालाब है जिसका पानी हरा है।

एक साइकिल है सामने जिस पर एक पानी लटकी हुई है सफेद नीले और लाल रंग की--

नीचे का चैनल खुला हुआ है और गेट भी खुला हुआ है सीढ़ी जो है वो हरे और मट मैले रंग की है ।

यहाँ पर जो फर्श है वो काली और भूरे रंग की हैं यहाँ पर कुछ अ लोहे के--

सामने मुझे मंदिर दिख रहा है जो नीले और पीले रंग का हैं।

और साइड में दोनों बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ है और घने भी है।

जो नीले लाल और सफेद रंग मे और उस पर एच पी लिखा हुआ हैं।

यहाँ की बाहर की जमीन जो हैं वो कुछ भूरे और हरे रंग--

पास में घाँस उगी हुई हैं छोटे-छोटे कुछ पौधे हैं इसके आगे जो जमीन हैं वो पथरीली हैं कुछ मटमैले रंग की हैं।

इसके ऊपर पूल बना हुआ हैं जिसके खंभे भूरे रंग के हैं।

साइकिल खड़ी हुई है जहाँ पर नीला पन्नी बीस रुपया आलू है प्याज है ।